ग्राउंड है जिसमें काफी सारे लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पैर को ऊपर उठाए हाथों को जोड़ें ट्यूबलाइट लगी है और काफी सारी लाइट लगी हुई है नीचे टाइल्स लगे हुए है।

एक हॉल है हॉल मे तीन कांच लगे हुए है दो लाइट लग रही दिखाई दे रही है।